मंदिर का नाम श्री मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम है।

जिस पर लिखा है रबड़ी फालूदा स्पेशल --

दुकान के सामने ही एक दुकान है जिसका नाम है टैक्सेशन कंपनी है।

एक दुकान का नाम द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है।

यह फोटो गौतम बुद्ध जी का है जिन्होंने बहुत से महान कार्य किए।

नदी के आसपास पेड़ पौधे--

जिसने नीले रंग की टी शर्ट पहनी है।

यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य है जो की जंगल से होकर जाता है।

चावल तेल नोर सूप --

इस फोटो में एक व्यक्ति के जूतो को भी देखा जा सकता है।

इस टॉवर को बिजली के तारों ने घेर रखा है।

इस फोटो में हरियाली नजर आ रही है।

इस एरिये का वातावरण बहुत शुद्ध है।

इस फोटो में बहुत से लैंप दिख रहे हैं। यहां पंखें भी --

जो की है गुलाबी और नीला।

इस फोटो में एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो कि फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा हुआ है।

यह एक चर्च नजर आ रहा है।

यह एक जिम का फोटो है।

इसमें एक व्यक्ति जिम कर रहा है।

एक वस्तु टंगी हुई है जो की पीले रंग की है।

यह फोटो एक रेस्टोरेंट का प्रतीत होता है।

डी_एस_पी सोडा एंड कॉफी शॉप है।

दोनों व्यक्ति परांठा खा रहे हैं।

इसमें सफेद और काले रंग की गाड़ी खड़ी है।

गाड़ियों की बगल में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

सड़क पर वाहन खड़े हुए हैं।

ये सब सामान प्लास्टिक की पन्नियों में रखा हुआ है।

सोफों पर कपड़ा चढ़ा हुआ है जो की पीले और सफेद रंग का है।

पास में बहुत से उपहार रखे हैं। यहां पर एक क्रिसमस का पेड़ बना है।

यह एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य है यह एक हॉल का दृश्य है।

मुझे यहां पर तीन गाड़ियां नजर आ रही है एक ब्लैक कलर की एक रेड कलर की और एक वायलेट कलर की है।

दुकान का नाम ए टू जेड मोटर्स है और उसी की साइड में जय हिंद की एक और दुकान है।

ए टु जेड मोटर्स की दुकान के अंदर एक बाइक भी है और यहां पर तीन--

व्यक्ति के चारों ओर बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे लग रहे हैं जिनसे वह पार्क की शोभा बढ़ा रहे हैं।

यह एक बहुत लंबा खंबा है जिसपर लिखा है पेट्रोल और डीजल एच_पी ।

सम्राट नोवेल्टी चौक लिखा हुआ है।

यहां पर स्टार्टिंग में हरे रंग के गेट लगे हुए हैं।